नजारा दिख रहा है एक और भी दिखाई दे रही है बहोत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है एक बोतल भी दिखाई दे रही है और यहां पे बहुत --

और बहुत ही अलग तरीके से है मुझे यहां पे रहने को मिल रहा बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा दृश्य तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा मां शार्ला --

यहां पे मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और ऐसे पेड़ मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखे हैं बहुत ही शानदार दिखाई दे रहे हैं।

चिमनी दिखाई दे रही है बहुत की लाइटें दिखाई दे रही है बहोत ही अलग तरीके का मजा आ रहा है बहोत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रही है बहोत ही अलग तरीके का --

यहां पे मुझे बहोत ही सारी दृश्य देखने को मिल रहा है यहां पे और भी बहोत ही मजा आ रहा है यहां पे मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई दे रहा है एक फोन भी दिखाई दे रहा है जो वो मेरा है और अलग भी तरीके से मुझे अलग चीजे दिखाई दे रही हैं बहुत ही शानदार तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं।

और भी बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है शानदार मुझे बहोत ही अलग तरीके का मजा आ रहा--

जिंदगी में नहीं देखा कभी न कभी मुझे लगता है मैं देखूंगा बहुत शानदार दृश्य है एक साथ दिखाई दे रहा है बहुत ही शानदार तरीके से।

और यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है बहोत ही शानदार तरीके चीजें दिखाई दे रही है और यहां पे हो सारी पुरादनी जो है दिखाई दे रहा।